मकान बन रहा है उसकी छत डल रही है।

व्हाइट कलर का शर्ट एंड ब्लू कलर का पैंट ब्लैक जींस ब्लैक अऽ --

सामुदायिक पुस्तकालय है आमलाचातर लिखा है पंचायत उदबनी--

एंड बलूंस लेग है ग्रीन ब्लू पिंक व्हाइट ।